जहां पे लड़की अपने बाल बांधे हुए हैं साथ में उसके बालों में लाल रंग के कुछ क्लिपस भी लगे हुए हैं।

साथ में सड़क के साथ लगी--